जावा में थिस कीवर्ड के उपयोग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे थिस कीवर्ड के उपयोग के बारे में फील्ड्स के साथ थिस कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में कंस्ट्रक्टर्स के श्रृंखलन के लिए थिस कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबंटू वर्जन 1110 जेडीके 16 इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दर्शाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी अब हम थिस कीवर्ड के बारे में जानेंगे
कंस्ट्रक्टर में वर्तमान ऑब्जेक्ट के लिए थिस एक रिफ्रेंस है
हम थिस का उपयोग करके कंस्ट्रक्टर में वर्तमान ऑब्जेक्ट के किसी भी सदस्यमेम्बर को रिफर कर सकते हैं
अब हम फिल्ड के साथ थिस कीवर्ड का उपयोग देखेंगे
थिस कीवर्ड हमें नाम के टकराव को दूर करने में मदद करता है
हम यहाँ इस तरह का एक उदाहरण देखेंगे
इसके लिए इक्लिप्स खोलें
स्टूडेंट क्लास खोलें जो हमनें पिछले ट्यूटोरियल में बनाया है
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट करें 1 पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर कमेंट करें

और पहले दो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोड को भी कंमेंट करें

अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर ध्यान दें
the roll number और the name कंस्ट्रक्टर के पास किए गए आर्ग्युमेंटस हैं
roll number और नामे इंस्टंस वेरिएबल है
अब मैं roll number और नामे अर्ग्युमेंट बदलता हूँ
अतः कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास हैः roll number इक्वल टो roll number और नामे इक्वल टो नामे
अब फाइल को सेव और रन करें
अतः Ctrl S और Ctrl फ़11 दबाएँ
हमें निम्न प्रकार आउटपुट मिलता है
आई एएम आ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नुल अब कोड पर वापस आएँ
हमें कोड में 2 चेतावनी देखते हैं
आपने माउस को चेतावनी सिंबल पर ले जाएँ
हम देख सकते हैं थे असाइनमेंट टो थे वेरिएबल roll number हस नो इफेक्ट
और थे असाइनमेंट टो थे वेरिएबल नामे हस नो इफेक्ट
ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रोल नंबर और नाम लोकल वेरिएबल हैं
लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल हैं जो मेथड या ब्लॉक में एक्सेस करने योग्य होते हैं
यहाँ roll number और नामे 11 और राजू होंगे
क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के रुप में वेल्यूस 11 और राजू पास किए हैं
लेकिन एक बार वे कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाते हैं तो एक्सेस करने योग्य नहीं होते हैं
फिर हम जानते हैं कि roll number और नामे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं
वे 0 और नुल से इनिशिलाइज हो जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाता है
अतः हमें आउटपुट 0 और नुल मिलता है
अब कंस्ट्रक्टर के अंदर एक छोटा परिवर्तन करें
अतः टाइप करें थिस डॉट roll number इक्वल टो roll number और थिस डॉट नामे इक्वल टो नामे
अब फाइल को सेव और रन करें
अतः ctrl एस और Ctrl फ़11 कीज दबाएँ
हमें इस प्रकार आउटपुट मिलता है
आई एएम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर 11 और राजू ऐसा इसलिए क्योंकि थिस डॉट roll number और थिस डॉट नामे इंस्टेंस वेरिएबल्स roll number और नामे को संदर्भित करते हैं
और यहाँ roll number और नामे मेथड में पास किए गए आर्ग्युमेंट्स हैं
लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल्स के मध्य टकराव दूर करने के लिए हमारे पास थिस कीवर्ड है
अब हम कंस्ट्रक्टर के श्रृंखलन के लिए थिस कीवर्ड का उपयोग देखेंगे
हम थिस कीवर्ड का उपयोग कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी अन्य को कॉल करने के लिए कर सकते हैं
कंस्ट्रक्टर्स समान क्लास में होनी चाहिए
यह एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कहलाता है
अतः स्टूडेंट क्लास पर वापस जाएँ जिसे हमनें बनाया है
अब कमेंट्स को हटाएँ

अब पहले दो कंस्ट्रक्टर्स में इंस्टेंस वेरिएबल्स की वेल्यू निर्धारित करने के लिए भाग को कमेंट करें

फिर उस भाग को कमेंट करें जो दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता है

अब पहले कंस्ट्रक्टर पर पैरामीटर्स के बिना आएँ
कर्ली ब्रैकेट के बाद टाइप करें थिस ब्रैकेट्स में 11 और सेमीकॉलन दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइप करें थिस ब्रैकेट्स में 11 कॉमा डबल कोट्स में राजू सेमीकॉलन अब फाइल को सेव और रन करें
अतः CtrlS और Ctrl फ़11 दबाएँ
हमें इस प्रकार आउटपुट मिलता है आई एएम आ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आई एएम आ कंस्ट्रक्टर विथ आ सिंगल पैरामीटर आई एएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 11 और राजू अब मैं आउटपुट समझाता हूँ
जब ऑब्जेक्ट बनता है संबंधित कंस्ट्रक्टर कॉल होता है
यहाँ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट रहित कंस्ट्रक्टर है
कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल पहली लाइन पर आ जाता है
यह सामना करता है थिस ब्रैकेट्स में 11 स्टेटमेंट
इसलिए यह ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो सिंगल इंटीजर आर्गुमेंट स्वीकरता है
फिर कंट्रोल थिस ब्रैकेट्स में 11 कॉमा राजू पर आ जाता है
इसलिए यह ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो 1 इंटीजर और 1 स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्वीकारता है
अतः यह कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है और हमें यह आउटपुट मिलता है आई एएम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर
अब इंस्टेंस वेरिएबल्स 11 और राजू के लिए इनिशीलाइज होंगे
जैसे हमने पास किए
अब कंट्रोल कॉलिंग कंस्ट्रक्टर पर वापस जाता है
अतः दूसरा कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है
हमें आउटपुट मिलता है आई एएम कंस्ट्रक्टर विथ आ सिंगल पैरामीटर
फिर कंट्रोल पहले कंस्ट्रक्टर पर जाता है और इसे निष्पादित करता है
अतः हमें आउटपुट मिलता है आई एएम आ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
फिर स्टुडेंटडेटेल मेथड निष्पादित होता है
अतः हमें 11 और राजू मिलता है
अब एक छोटा सा परिवर्तन करें
थिस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्टर में आखिरी रखें
हमें कंपाइलर एरर मिलती है
एरर सिंबल पर माउस रखें
हमें एरर मिलती है कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बीई थे फर्स्ट स्टेटमेंट इन थे कंस्ट्रक्टर
अतः हमें इसे कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन में रखना चाहिए
अतः इसे कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन बनाएँ
अब हम देख सकते हैं कि एरर हट गई है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
फिल्ड्स के साथ थिस कीवर्ड का उपयोग करना कंस्ट्रक्टर्स श्रृंखलन के लिए थिस कीवर्ड का उपयोग करना
कंस्ट्रक्टर में थिस कीवर्ड का उपयोग कैसा होना चाहिए
स्व मूल्यांकन के लिए पहले बनाए हुए एम्प्लॉयी क्लास में दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाएँ
इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशीलाइज करने के लिए थिस कीवर्ड का उपयोग करें
1 और बिना पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाएँ
ट्यूटोरियल में दिए गए विवरण के अनुसार थिस का उपयोग करके कंस्ट्रक्टर्स का श्रृंखलन करने का अभ्यास करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए है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
धन्यवाद